इतना मस्त पेड़-पौधा है देख सकते हैं हरा-भरा और बहुत ही --

अच्छा पेट्रोल वगैरा मिलता है आप देख सकते हैं बहोत ही सुपर - डुपर लोग दिखाई दे रहा होगा।

मस्त लाल गमला देखे दिखाई दे रहा होगा आपलोगों को डेकोरेशन --

देख सकते है दिखाई दे रहा होगा आप सब को।

और चारों साइड में पेड़-पौधा है हरा-भरा देख सकते हैं अभी भी।

और इसका मन बहुत चंचल है और देख सकते है।

और ये दिन में पांच बार दीप को जलाता है देखिए।

कप हइए हइए चाय पीने के लिए मटका हइए।

बहुत ही लोग दिखाई दे रहा है।

बहुत ही प्यारा लुक दिखाई दे रहा होगा और ये भाई --

सब कुछ पेमेंट सिस्टम हौले से देख सक --

गिनती में मेरा चप्पल लग रहा है सब उपलब्ध है देख सकते हैं।

ये तो मसला है चिकेन मसला है चाय पत्ती है।

ऊपर भी रखे हैं देख सकते हैं --